यहां पर हमें एक बहुत बड़ी सड़क दिखाई दे रही है और उसके--

अ मोबाइल बनी अ मोबाइलों की दुकान है बनी हुई है सिम जहां मिलती हैं और बहुत सारे पोस्टर लगे हुए है दो आदमी खड़े हुए भी दिखाई दे रहे --

अ दुकान के अंदर की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर जिम करने के लिए बोहोत सारी--

एक खंडर साइड भी बना हुआ दिखाई दे रहा है और कई लोग भी खड़े हुए दी--

और कैमरे और गुभारे लगे हुए दिखाई--

बहोत सारे छोटे छोटे गमले भी बने हुए दिखाई दे रहे है और एक साइड अह हैंड वॉश करने के लिए सा--